यहां पर एक एरोप्लेन खड़ी हुई है और उसपे कुछ लोग चढ़ रहे है। एक आदमी जो है बूढ़े की मदद कर --

जहाँ पर एक नाव है।

भाइयों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह लड़का खड़ा हुआ है और एक औरत बैठी है उसके पीछे तीन एक चार औरतें बैठी हुई हैं।

भाइयों जैसा की आप लोग देख रहें है यहां पर कुछ बच्चे आराम से मास्क लगाकर बैठे हुए हैं।

भाईयों जैसा कि आप लोग देख रहै है यहां पर --